गमला में फ्लावर पॉट बनाके हैं और एक फ्लावर पॉट है।

लड़की बालकनी में विंडो विंडो नहीं है।

ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है दोईमुख का और--

दोनों व्हाइट कलर एवं सीढ़ी उसमे--

घर का कलर ब्राउन और एक स्कूटी घर के बाहर फ्लावर पाट छोटा छोटा छे हैं और एक --

लिख रहा है एक पढ़ रहा है एक समझा रहा है एक कार्टन है।

तीन फाइल है एक पानी का बॉटल उसमें फ्लावर का पॉट छोटा छोटा एक दो ग्रीन कलर का।